ताकि पढ़ने वाले एकांत में पढ़ सके।

आसपास में बहुत सारे कर्टन भी लगे हुए हैं।

इसमें सूरज बादलों के पीछे से झांक रहे हैं।

दूर एक झोपड़ी भी दिखाई दे रहा है।

मिठाई के साथ वहां न्यूज़ पेपर भी परा है।

ये खड़ा व्यक्ति पुरुष मछली खरीदने के लिए आया है।

ये एक फर्नीचर की दुकान है।

सामने काले और सफेद रंग का कुर्सियां पड़ा है।

सेंटा क्लास की टोपी सर पे लगा रखे हैं।

एक बड़ा सा नीला भवन भी है।

एक व्यक्ति उसकी तस्वीर ले रहा है।

पेड़ घास और पार्क में घूमने के रास्ते दिख रहे है।

इस तस्वीर में तीन आदमी एक नदी के किनारे खरे है।

नदी बड़ी है और पेड़ों से घिरे हुए हैं।

आदमी बुरा है और वो नदी और आसमान के दृष्ट को देख रहे है।

ऊपर जो कुछ लटके हुए दिखाई दे रहे हैं वो अनाज के बंडल है।

ढाबे के ऊपर एक बड़ा साइन बोर्ड लगा है जिसमें ढाबे का नाम लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में एक बरे मैदान का नजारा है।

ऊपर से हरी चटनी और गाजर की सजावट भी है।

बहुत सारे ताजा सब्जियां है जैसे कि टमाटर गाजर बैंगन--

कुछ जूते डिब्बे में है और कुछ बाहर डिस्पले में है।

और साथ ही साथ दुकान में एक पंखा भी लगा हुआ है।